जहां का एटमॉस्फियर बहुत ही सुकून और बहुत अच्छा लग रहा है।

सामने एक वेटर भी नजर आ रहा है यहां की डेकोरेशन पूरी वाइट और क्रीम थीम के हिसाब से रखी गई है।

बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत भीड़ बना के खड़े हुए हैं अपनी बुक्स लेने के लिए --

यहां पे पानी का फाउंटेन भी है जो पांच या छे है।

इस पिक्चर में बहुत ही सारे फूल रखे हुए हैं।

मालाएं मुझे आगे बनी हुई नजर आ रही हैं जो इसमें पीला--

धोने जा रही है यहां पे बहोत रंग बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

एक कॉर्नर मै टेबल रखी हुई है जिस पे बोतल --

इस पिक्चर में एक ढाबा नजर आ रहा है रंगला पंजाब जो भोपाल का बहुत ही माना--

यहां पर बहोत सारे गमले रखे हुए हैं सफेद--

एक लड़की उसमें से मास्क लगाई है और एक लड़का उसमें मास्क नहीं लगाया।

व्यक्ति सामने खड़े होकर सबको ट्रेन कर रहा है।

छतरी है जिसका रंग पीले कलर का है।

नजर आता है ये बहुत बड़े कैंपस के बीच में है।

कुछ लड़के बैठ के बातें करते नजर आ रहे हैं।

इसमें जालियां हैं ये सबसे अच्छी तरह से पुता हुआ है।

यहां पे कोई बैठा तो नहीं दिख रहा लेकिन ये शॉप बहुत बड़ी है।

वहां लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं।

यहां पे एक व्यक्ति बच्ची के साथ खड़े होकर मंदिर में खड़ा हुआ है।

यहां एक ही प्रकार के कई तरह के पौधे लगे हुए हैं।

यह एक वाटर पार्क की फोटो है जहां बहुत सारी स्लाइड्स हैं।

और कुछ महिलाएं बैठकर साड़ियां देख रही हैं।

यहां एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जहां पे--

यहां पे पेड़ों को सफेद रंग की बाउंड्री से पोता गया है।

ये बहुत सुंदर एक दीवार है जहां--

बहोत सुंदर सुंदर राजस्थानी लोगों की पिक्चर लगी हुई है।

ये स्टैच्यू बहोत सुन्दर लगता है सभी लोग इसमें पगड़ी पहने हुए है।